अबे यार यहाँ तो कोड़ा है यार यहाँ की साफ सफाई करवानी चाहिए यहाँ --

लोगों को परेशानी होती होगी यार इससे जल्द से जल्द सब --

सामने जो गेट है ब्लैक कलर का ये कितना अच्छा लग रहा है।

ओ यार ये डी_जे कितने अच्छे लग रहे हैं। ये डी_जे शर्मा ऑडियो ये बोहोत बढ़िया लग रहा है इसके साउंड भी बोहोत अच्छे हैं डी_जे के।

इसके सामने जो सूरज निकल रहा है हल्का-हल्का ये कितना सुंदर लग रहा है और ये ब्लैक एंड वाइट कितना प्यारा लग रहा है ।

ये जगह इतनी सुंदर लग रही है ये पानी बहुत ज्यादा सुंदर --

ये आईडिया फोर जी आईडिया फोर जी बोहोत अच्छा सिम है इसकी स्पीड भी बोहोत अच्छी है आईडिया बोहोत नंबर वन सिम है।

ये कपड़े कितने अच्छे लग रहे हैं। ये दुकान बोहोत बढ़िया है।

इस घर में बोहोत काम बचा है। ये घर बोहोत अच्छा लगेगा जब ये पूरा तैयार हो जाएगा बनके।

ये बिल्डिंग ये टेंपल कितना अच्छा लग रहा है देखने में और इस टेंपल के सामने ये घास और ये पौधे कितने सुंदर लग रहे हैं।

ये टेंपल बिल्कुल राजा महाराजाओं के जमाने का टेंपल है।

ये एक रूम है जिसमें हम आराम करते हैं और ये टी.वी. है। जब हमारा टाइमपास नहीं होता है तो हम टी.वी. ऑन कर लेते है। ये रूम बहोत सुंदर है देखने में।

ये सामने बोर्ड है इस बोर्ड आ पर हमारे टीचर हमें पढ़ाते हैं ये स्कूल है इस स्कूल में हमें शिक्षा अन्य प्राप्त होती हैं।

ये एक मशीन है। ये एक लेटर मशीन है।

इस मार्केट में हम अपने लिए फल अपने लिए सब्जी यहीं से खरीदते हैं यह बहुत अच्छा है मार्केट ।

हमें अच्छा ज्ञान प्राप्त होता है। ये लाइब्रेरी हमारे बोहोत काम आ --

इस रिपेयरिंग सेंटर में कार रिपेयर होती है।